इस फोटो में हमें यहा टाईल दिख रही है जो की टाईल हमे वाइट कलर ब्राउन कलर --

कुछ रेड कलर के गमले भी है यहां पर हमें--

दिखाई दे रहे हैं साथ में ही हमें यहां छत लगी हुई टिन कि दिखाई दे रही है।

जंगल भी दिख रहा है। नीचे की ओर सीढ़ियां लगी हुई है कुछ क्रीम कलर के--

बास्केटबॉल बैडमिंटन का कुछ मैदान दिख रहा है कुछ बेंचेज लगे हुए हैं बिल्डिंग लगी हुई है पीछे ग्रीन कलर का आसमान दिख रहा है सामने ही --

अप्पर वाला फ्लोर भी हमे यहां पर दिखाई दे रहा है। कुछ छोटे छोटे बॉक्स यहां पर पक्षियों के लिए भी बने हुए हैं। सामने ही ब्लैक कलर भी हमें दिखाई दे रहे हैं। व्हाइट कलर की टोपियों के साथ कुछ--

और पीछे मैं एक बच्चा एक लेडीज --

और इसमें हमें कांच लगे हुए दिखाई दे रहे हैं साथ में ही ग्रीन कलर का छत है।

ब्लैक रंग की कार पर यहां काम होता हुआ दिख रहा है साथ में टायर लगा हुआ है एलॉय के साथ।

यहां पर व्हाइट कलर ग्रीन कलर और ब्ल्यू कलर के कुछ--

पेंटिंग्स लगी है पेंटिंग में कुछ लिखा है रेड कलर का हमें यहां स्टूल दिखाई दे रहा है साथ में ही व्हाइट कलर --

इस फोटो में हमें यहां पर एक व्यक्ति--

तिराहा है बीच में हरे भरे पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं साथ में हमें व्हाइट कलर की खिड़कियां भी नजर आ रही है और पीले कलर --

दिखाई दे रहा है एक गेट लगा हुआ है फूल का कलर यहां हमें यल्लो दिखाई दे रहा है पत्तियो वाले पेड़ भी हमें यहा पर दिखाई दे रहे है मिट्टी ब्राउन कलर का हमें दिखाई दे रहा --

साथ में ही कुछ पेंटिंग्स लगी हुई दिख रही हैं जिसमें कि गई इन कलर का आसमान पानी और बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी हमें दिखाई गई है।

एक पोस्टर व्हाइट कलर का है पिंक कलर --